ये बहुत अच्छा है श्री श्री है | श्री माता मंदिर है जोकि बहुत सुंदर है देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और अच्छा खासा है सब कुछ सुंदर सुंदर लग रहा है बहुत प्यारा है | यहाँ का जगह भी बहुत सुंदर लग रहा है और अच्छा --

अच्छा है बहुत सुंदर है यहाँ का सीन --

पहाड़ है जो कि बहुत अच्छा पहाड़ है दिख रहा है सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ का और अच्छा लग रहा है देखने में भी बहुत सुंदर है सब कुछ ठीक-ठाक है और बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में भी बहुत बड़ा है।

और बहुत बड़ा ऑफिस है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है इंटरव्यू ऑफ़ ऑफ़ मेडिकल ये है जो कि अच्छा लग रहा है हॉस्पिटल अच्छा खासा है जो कि देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है और यहाँ पर जेंट्स लोग भी हैं ।

अच्छा-खासा है सब कुछ ठीक-ठाक है बहुत खुबसुरत लग रहा है।

ये नट बोल्ट है जो कि नट बोल्ट बना रहा है लोग और अच्छा लग रहा है देखने में भी बहुत सुंदर है बहुत खूबसूरत दिख रहा है और लग रहा है कि होलसेल में बेचेगा लोग ढेर सारा नट बोल्ट है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है खूबसूरत है बहुत सारा दिख रहा है।